और ऑफिस के बाहर स्कूटीज लगी है जो कि ब्राउन और व्हाइट है। उसके सामने एक शॉप है।

ये एक शॉप है एक पेपर शॉप है जिसमें काफी सारे जो है अ समान रखा हुआ है और काफी सारे रेक्स बने हुए हैं।

एक जो है कार शोरूम में कार की दुकान है।